भाला लिए पड़े हैं इसमें अनेक प्रकार कि लाइटें है।

इस पोस्टर पर संजू चूल्हा लिखा है।

यह एक प्लाजा का सीन है।

और अनेक प्रकार की बत्ती लगे हुई है।

और एक पोस्टर पे लिखा गया है वाइल्डक्राफ्ट ।

और स्कूल में बहोत सारे पिलर लगे हुए हैं।

उसके बाहर हरी हरी घास लगी हुई है।

जिसके बाहर ऑटो है और कुछ व्यक्ति।

एक पर्दा लगा है और उसके नीचे टाइल्स लगी हुई है।

दीवाल पर खिड़की की परछाई है।

उसपे एस_बी_आई लिखा गया है स्टेट बैंक इंडिया ।

इसमें रेनफ्लो मतलब पानी उछल रहा है।

एक व्यक्ति खड़ा है और कुछ व्यक्ति भी हैं।

दो व्यक्ति हैं और एक ऑटो भी है।

बस पे कुनवार लिखा है स्लीपर कोच भी लिखा है।

दो ऑटो दिख रहे हैं उसमें स्टील का गेट लगा हुआ है।

यह एक कॉलेज है जिस कॉलेज का नाम सैंट डोमनिक सोविक कॉलेज है।

मेट्रो स्टेशन पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

कुछ अन्य प्रकार की लाइटें लगी हुई हैं।

सैलून वाला व्यक्ति एक ड्राई क्लीनर लिया है।

इस सैलून में दो व्यक्ति हैं।

इसमें एक पेड़ है यहां पे कुछ व्यक्ति हैं।

उसके बगल में कुछ का पेड़ है और बिल्डिंग भी है।

इसमें कई सारे लोग दिख रहे हैं।

तीन व्यक्ति हैं जो आपस में बात कर रहे हैं।

रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति खड़ा है।

इसमें के बगल में कुछ खंबे लगे हुए हैं।